एक वैंक है। वैंक के वाहार गार्ड भि खाड़ा हूआ हे और तिन लोक हे। एक दूसरेसे बात भि कर रहैै है। और लेडिज कि लाइन लागि हूइ है। और उहापे सिड़ि भि है। और ब्लू कालार का वोर्ड है।

मछली बेची जा रही है और एक आदमी उसको तोलकर बेच रहा है और एक आदमी मछली उठा रहा है जो बेच रहा है उसने व्हाइट कलर का आ टी-शर्ट पेहन रखी हे और ब्लैक कलर की जींस ।

कुछ झाड़ पेड़े बाहार औ अंदर दोनों तरफ और बिल्डिंग है दोनों तरफ एक लेफ्ट में एक राइट में और बच्चे गाड़ी के पास खड़े हैं थोड़े बहत--

एक तरफ बहुत सारे बच्चे हैं फुटबॉल मैच देख रहे हैं और वहां पे बाउंड्री है और बाउंड्री के अंदर ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं।

खाम्बा है और वायर जारहे है और उः बोहोतसारी गलेरी भी है उस बिल्डिंग में और बोर्ड लगा है दुकान का।